इ एगो दुकान हई आई दुकान में बेडमिन्त धैल हई आई दुकान में फुटबोल धैल हई |

इ एगो बगीचा हई | अ इ बगीचा में गेदा के फुल सब उगल हई और उ फुल उगल हई |